पेड़-पौधा फूल वगेरा है।

ये बदायूँ का कॉलेज है।

अपने कारोबार के लिये भी तरीके यूज करी जाती है।

यहाँ मार्केट डेट पे --